यहाँ पे आप देख सकते है यहाँ पे एक सुपर मार्किट है जहाँ आपको सभी सामान उमान मिलता है यहाँ पे कपडा जुत्ता चप्पल बेल्ट कप ये सब मिलते है ये सब मिलते है बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते है।

जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो वहां पे फिर आते है ये बहुत ही अच्छा मशहूर भी है यहाँ पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्ले ग्राउंड --